और सारे बहुत सारे येल्लो और वाइट कलर की बैलून सजाई गयी है इधर येल्लो ब्लू कलर की सजाई है।

एक हना पहाड़ टाइप का लग रहा हैं उधर बाहर नजर आ रहा और यहां बहुत सारी जंगल नजर आरा और वहां पे शायद घर या कुछ ऐसे सामान ह वगैरा रखा हुआ हैं और यहां पे भी एक बड़ी सी पेड़ नजर आ रही हैं और इधर कुछ एक झड़ी टाइप नजर--

ये कोई ना खाई टाइप का लग रहा है जो कि यहाँ बहुत सारे जंगल नजर आ रहे हैं| बीच से जो हैना रास्ता बना हुआ है जोकि पत्थर-उत्थर है उसके ऊपर से पानी की लहरें जा रही है।

ये एक जौना रास्ते हैं जो कि यह बहुत ही सन्नाटे रास्ते हैं और दोस दोनों साइड जो कि या बहुत ही बड़ी-बड़ी पेड़ लगी हुई है ये बहुत ही जंगल टाइप की हा अ --